रखा हुआ है और बेड का ड्रॉर थोड़ा सा खुला हुआ है और बेड जो है वो टाइलों के साथ एकदम--

दो चार पांच तरीके की दो तीन मशीने रखी हुई दिखाई दे रहीं हैं।

और हमें यहां पे दिख रहा है कुछ शैंपू कुछ मैगी --